जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर एक खम्भा है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहां पर बहोत सारे बच्चे हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर एक आदमी के हाथ में झूला है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर एक खम्भा है लाइट का।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर छोटी लक लकड़ी हैं।

और जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर तार जा रहे हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर टायर है।

जैसा की जैसा कि मैं यहां पर देख सकता हूं यहां पर बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर स्लिप भी बनी हुई हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं।

देख सकता हूं यहाँ पर लाइट जल रही है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर बोट लगा हुआ है जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर एक बेड है जिस पर बिस्तर हो रहा है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर बहुत सारे--

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहां पर बहोत सारे पेड़-पौधे हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर एक हेलमेट है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहां पर पेड़ हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर मैच चल रहा है।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर खम्भा लगा हुआ है एक।

जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर एक बड़ी सी दुकान है।